ये एक स्टेज है जहाँ पर दो कुर्सियां लगी हुई है बैकग्राउंड में एक पर्दा है जिसपे फ्लॉवर्स लगे हुए हैं जो की --

ये क्लब है जहाँ बच्चे मैच खेलते है बट यहाँ पे कोई भी बच्चा नहीं दिखाई दे रहा है निचे त्रिकोण जैसे नीले-नीले कुछ पड़ा हुआ है।

यहाँ बहुत सारे आ फ़ल दिख रहे है जोकि देखने में बहुत--

जो की बहोत ज्यादा अच्छा दिख रहा है यहाँ मुझे एक हरा कलर का पेड़ भी दिख रहा है जो की पत्थरो के बीच से निकल रहा है।

दुकान पर मुझे दो तीन लोग दिखाई दे रहे है जो की सब्ज़ी देखते हुए दिखाई दे रहे है।

एक बस का कलर लाल है और दुसरे र बस का कलर सफ़ेद है बस के उपर दुबे लिखा हुआ है।

यह एक वॉटर फॉल सीन है।